असल मा ये तीन पहया वाहन होंदु जु सवारी लीजाणा काम आन्दु अर आप देखण होण लग्यां ये का ति पहया वाहन यांका बोल्दा क्यूंकि ये पर तीन टायर रोंदा और यू गैस से चल्दु।

अभी आप एक लड़की त देख सकदा --

असल मा इ मिट्टी का कप छ जों पर चाय पि जांदी और आप देख सकदा की कतिगा सुंदर सूंदर कप लग्यां छा और ईं दुकान काफी अच्छी लगणी।

ये तस्वीर आप देखण लग्यां व अशल मा एक झील की तस्वीर छ जख एक नाव चलण लगीं और आप देख सकदा दुई न-न-नाव चालक नाव त चलोण लग्यां।

अभी आपका समणी जु एक हवाई जहाज खड़ु छ और आस पास हवाई जहाज का वर्कर जु असल मा हवाई जहाज पर काम करदा।

और य मुकेसा तमिल की तस्वीर ह्वे सकदी कि कि एैंच कुछ तमिल भासा मा लिख्युं चा।